यहाँ पर पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर यहां डलें हुए हैं।

जो बहने अपने भाईयों को बांधती है रक्षाबंधन आने पर--